और आज -कल के नेता लोग अंनपढ़ आ गए है बड़े-बड़े पद में होना जाना कुछ नहीं और--

एक मास्टर जी भजन सुना रहे है।

ये पुराने ज़माने की हमारी पुरानी सभ्यता की कला कृति है।

ये हम बस्तर साइड आपको ज्यादा देखने मिल जायेगा बस्तर इलाको में ऐसी कई सारी मूर्तियाँ देखने मिल जाएगी --

तो बतख पानी में रहना चाहिए तो ऊपर में क्यों आके बैठा है धूप सेक रहा होगा बेचारा हम्म --

पानी में जायेगा थोड़ा देर बाद बतख लोग--

आइट साइड में पार्क बनाते ही बनाते है ताकि बच्चे लोग खेलने जा सके करके या टहलने जा सके बड़े लोग बुजुर्ग लोग भी वैसे बड़े-बड़े इमारते बनी हुई है।

बढ़िया है भाई लड़के लोग लड़के लोग का सैलून मिल जाता है लड़कियों का पालर कही नहीं मिलता है लोग बोलते है बहुत सारा पालर होता हैं करके--

कम्प्यूटर सिख रहै है लग रहा है नहीं ये ना ट्यूशन क्लास है बच्चे लोग के लिए बना दिए है अव बच्चे लोग मोबाईल से --

पूरा रोड वगेरा अइसे ही पड़ा रहता हैं जिसको जो काम करना रहता है करते रहते है मिल में काम करना लेकिन बहुत कठिन रहता है।

ये क्या चाय की टपरी --

और डायपर ये सब नहीं होता है चाय का पूरा पैकेट रखा हुआ है।

गेओ को भजन बोलते है।

अंदर के जितने भी है ना पत्थर उथर पूरे दिखाई दे रहै है ऐसी नदियों में ना --

ये हमारी अ अ अब मतलब छत्तीसगढ़ की पुरानी सभ्यता का वो--

ये हमारी जो सभ्यता हैं पुरानी सभ्यता वहाँ ऐसी कलाकृति बनाई जाती थी पहले तो उसी को बनाये है कही देने के लिए होगा।

मस्त झूलते रहो टेन्सन फ्री --